यह एक बड़ा पार्क है पार्क में बहुत सारी छोटी छोटी हरि घास लगी हुई है।

चारों तरफ हरी क्यारियां बनी हुई है पार्क के अंदर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

रखी हुई हैं फ्रिज पे कोका कोला और पेप्सी लिखा हुआ है पीछे अलमारी पर बहुत सारा सामान रखा है।

तीन सौ पचपन दो सौ निन्यानबे तीन सौ निन्यानबे तीन सौ पचहत्तर फ्री लिखा हुआ है पीछे अलमारियां बनी हुई हैं।